यह फोटो में सामने की ओर एक गार्डन दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारे--

यह चित्र में सामने की ओर एक बहोत बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है।

फिटनेस के पोस्चर दिख रहे है।

तीन तीन प्रतिमा दिखाई दे रही है।

यहां किचेन में सामने की ओर--